फोटो मा जी आप त दिखेण लग्युं यख मा जी एक लम्बी सी रोड छा जैका पिछाड़ी बिटिन आप त कुछ दुकान होली दिखेण मिलणे की।

ऐंच बिटिन आप तैं एक बाल काटना की दुकान कै घर कू गेट और दुई तीन दुकान होली दिखेणा कू मिलन लगीं पिछाड़ी बिटिन आप तैं बड़ी बड़ी भी होली दिखेणा कू मिलन लगीं।

फोटो मा जी आप देख सकदें की यख मा जी एक नदी छा जी कु बहाव भोत ही ज्यादा छा यांका एंच बिटिन आप ते एक पुल हुलो दिखेण लग्युंजा का एंच बिटिन बहोत सारा लोग उंडे बिटिन फंडे जाण लग्यां।

याँ का एैंच बटिन अपते एक ब्रिज या पुल होल दिख्येणक मा लग्युं जाँका एैंच बटिन लोग उंडा बटिन फंडा छन जाण लग्यां।